और इसका कलर हल्का ब्राउन कलर है इसके बाहर दो कार खड़ी हुई है।

कुछ खड़े हैं और यहां पे बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है बैग वगैरह एक ब्लू कलर की टंकी रखी हुई है एक औरत बैठी हुई है।

ये मुझे एक ढाबे की फोटो लग रही है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है और इस ढाबे का नाम --

तड़का ढाबा है और इसमें एक आदमी खड़ा है जो शायद खाना ले रहा है और एक आदमी है जो शायद खाना बेच रहा है।

इसमें फूलों के पेड़ है कुछ बड़े और छोटे बच्चे हैं और ये भाग रहे हैं बच्चे शायद और इसमें बीच में फव्वारा लगा हुआ है।

बैंक ए_टी_एम का नाम स्टेट बैंक ए_टी_एम है और इसमें कुछ व्यक्ति लाइन में लगे हुए हैं।

और उसपे फ्रोगंस नाम का बैनर चिपका हुआ है।